वहां में बहुत सारा आदमी लोग हैं।

अलग अलग रंग का टोपी पहन के अलग अलग रंग का ड्रेस पहन के हैं।

इसका सामने बहोत सारा आदमी लोग खरा करके है।

सामने बोहोत सारे आदमी लोग चेयर मे बैठ रहे हैं।

तो यहां पे मेरे को एक कमरा नजर आ रहा है।

फेविकोल का भी बड़ा डब्बा है छोटा डब्बा भी तो है।

तो मेरे को यह एक दुकान दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे है।

कोई कोई आदमी बैठ रहा है कोई कोई आदमी खड़ा करके है।

तो यहां पर मेरे को एक दुकान नजर आ रहा है।

इसमें विंडो भी दो है।

सब लोग चेयर में बैठ रहे--

और एक लरकी बैठ के हैं।

अभी मेरे को एक घर दिखाई दे रहा है वहां पे लिखा हुआ है मिरर में आनंद मोटर्स ।

कार्टून लोग भी तो रखा हुआ है।

और अंदर में बहोत सारा पेड़ लोग दिखाई दे रहा है।

वहां पे लाइट्स वीडियो देके है बहोत सारे रंग का लाइट्स देके है।

साइड में मेरे को अजीब से देख रहा है।

और पीछे में ये बड़ा वाला मशीन का पीछे मे बहोत सारा पेड़ लोग भी देख रहा है।

और यहां पे मेरे को एक दुकान नजर आ रहा है।

साइड में एक स्टार भी तो लटका हुआ है।

एक गारी का पीछे में सरक जैसा दिखाई दे रहा है।

और तालाब के सामने फूल जैसा भी नजर आ रहा है।

यहां पे मेरे को हरे रंग का एक कमरा दिखाई दे रहा है।

हरे रंग लोग भी तो है।

एक लोग भी तो पार्क कर के है।

तो यहां पर मेरे को एक ट्रक नजर आ रहा है।

और ट्रक तो भारत पेट्रोलियम का ट्रक है।

के हुआ होगा साइड में एक बकेट देख रहा है।

साइड में घर भी तो नजर आ रहा है।

उसके सामने बहोत जमीन है वहां पे--

और साइड मे बच्चा का अम्ब्रेला जैसा देख रहा है।